यहां हमें एक दुकान दिख रहा है जिसमें--

में एक रोड है इस पे बहोत सारे लोग हैं।

यहां पे हमें एक फैशन की दुकान नजर आ रहे रोड --

उम्म उसके पीछे वृक्ष लगे हुए--

नजर आ रहा है इसमें बहुत सारे खेलने का सामान रखा हुआ है।